ये मगरमच्छ पानी को देखते हुए बैठा हुआ है बहुत सारे घाँस--

ने है झाड़ है झाड़ा है आसमान पानी नीले कलर में है और बत्तख ऊपर एक पोल

पोल पे बैठे हुए है तीन बत्तख बैठे हुए है तीन बत्तख दो तीन बत्तख है दो खड़े हुए है एक बैठी हुई है उनकी चोंच

यहाँ पानी है पोल है मठी है पानी में कुछ झाड़ दिखाई दे रहे है।